यहाँ निखिल लिखा हुआ हैं और सामने कुछ पैकेट्स टंग रखे है। अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ बहुत बहुत का बड़े-बड़े कार्टून पे सामान रखा हुआ हैं।

यहाँ पर जिम की मशीन्स लगी हुईं हैं। जो ब्लैक रेड कलर की नजर आ रहीं हैं। येलो कलर की | नीचे फर्श जो है वो ग्रीन --

और पंखे लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है। ।